भी होता है और यह जगह काफी खुबसूरत है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं अपने-अपने सामान खरीदने के लिए |

मुस्कुरा रहा है। यह बोहोत ही खुश नजर आ रहा है। ऑरेंज कलर दिख रहा है। यहाँ पर बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

डेकोरेशन किया गया है ये यहाँ जो फूल सजाई गई है वो काफी खुबसूरत लग रहा है यहाँ पर एक लाइट सी दो लगाया गया है जो स्टैंड पर इसको तैयार किया गया है यह डेकोरेशन बहुत ही खुबसूरत लग रहा है।